यहाँ पे बहोत अच्छे-अच्छे शिक्षक होते हैं जो की बच्चो को अच्छे से पढ़ाते है और यहाँ पे काफी अच्छा अनुशासन भी सिखाया जाता है।

काफी अच्छा लगता है एक्सरसाइज लोग करते है और अपने शरीर को फिट रखते है।

और योगा करने से बहोत सारी बीमारियों का निवारण है होता है बहोत सारे लोग योगा करना पसंद करते है और सुबह-शाम योगा करते हैं ।

और यहाँ पे बहोत प्रकार के खेल खेले जाते हैं यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी और भी बहोत सारे खेल खेलते हैं यहाँ पे लोग दौड़ने भी आते हैं यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं टहलने भी आते हैं ।

एक डैम है और यह डैम बहुत ही बड़ा है इस डैम में बहुत ज्यादे मात्रा में पानी है और लोग यहाँ पे आते है घूमने के लिए यहाँ पे घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है लोग यहाँ पे पिक्नीक भी करने आते है।